यह किसी घर के बाहर का फोटो है जिसमें कुछ पेड़ दिख रहे हैं एक मोटर साइकिल दिख रहा है ।

यहाँ पे एक चार सौ सात ट्रक भी है पेड़ पौधे भी हैं एक छोटा सा गेट भी है और एक बिल्डिंग भी है।

इसके बाद मछली लोग का कटाई होगा पीस पीस बनेगा मछली सब का फिर तरई होगा मछली सब का फिर आदमी सब इस मछली को खाएगा।